और यहाँ पर एक आदमी भी दिखाई दे रहा है इसने एक सब्जी का बोहोत बड़ा बोर्ड लगा रखा है।

यहाँ पर मुझे क्रीम कलर का ओटला दिखाई दे रहा है ओटले के ऊपर भगवान भोलेनाथ का मंदिर है जिसमे के नंदेश्वर भगवान भी बैठे हुए है।

यहाँ पर मुझे यह एक पार्क दिखाई दे रहा है पार्क में नीचे हरी कलर की घास दिखाई दे रही है।

और यहाँ पांच से छे लोग दिखाई दे रहे हैं। चेयर्स भी दिखाई दे रही हैं।

इसे मुझे डूबता हुआ सूरज नजर आ रहा है। आसपास मुझे बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।